ये एक कुरकुरे का अलमारी है दो बच्चियां नजर आ रही हैं।

पीले कलर का गेट है।

एक तीन मंजिला झंडा गड़ने जैसा कुछ बना हुआ है जिसमें एक छोटा सा लिखा गया है जगत जानी नाम से--

ग्रीन कलर का कारपेट बिछाया गया है।

कुछ ज्वैलरी कुछ सेंट परफ्यूम चूड़ी सिंदूर लिपस्टिक इत्यादि जैसे सामान हैं।

यह देवघर रेलवे स्टेशन है।

बहोत सारे गमले रखे हुए हैं जिसमें गेंदा फूल लगाया गया है।

एक घर है जहां पे ऊपर में गमले टंगे हुए हैं।